कैनरा बैंक का हैजो सिंडिकेट से लिंक हो चुका है| आज के टाइम में जो यह एक ए_टी_एम का दिखाया गया है उसके पास एक की दुकान भी है जिसमे कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

अबकी बार जो ये पिक्चर है इसमें काफी खेती के बारे में दिखाया गया है उसमें एक झोपड़ी भी बनाई गयी है जो की एक लकड़ी की है।